फूल बेच रहे हैं गुलाब के गेंदे के और ये-यहां पर बहुत से लोग बैठे हुए भी हैं एक आदमी यहां पर खड़ा हुआ है।

और यहां पर एक इंजीनियर भी खड़ा हुआ है और हमें बहुत सारी लेबर्स भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक दो मोटरसाइ-किल भी पार्क की हुई है और एक ठॆला भी रखा हु-आ है एक एटीएम एक तीन सेट में है।

जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने एक इलाहाबाद बैंक है इस बैंक में चार ऐ.सी. लगी हुई है और इसमें एक खिड़की भी लगी हुई है |

यहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है एक आदमी सामने की तरफ खड़ा हुआ है और यहां पर से एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है ।